और कुछ पंखे भी हैं।

यह एक बहुत ही बड़ी फल वाले की दुकान है।

और बहुत सारे आदमी भी हैं।

जिस पर कांच लगा हुआ है और इसमें अलग अलग तरीके की मिठाई भी धरी हुई है।

यह एक स्थान है और यहां बहुत सारे आदमी और औरत भी हैं।

और साइड में कुछ आदमी भी है और कुछ घर भी है।

यह एक बहुत ही बड़ा घर है।

और कुछ पेड़ पौधे भी है।

यह एक बहुत ही बड़ा मंदिर है।

अउर साइड में एक पुल जा रहा है।

यह एक दुकान है और इसमें बहुत सारे कुर्सियां धरी हुई हैं।

अउर पीछे एक पंखा भी है।

यह एक डॉक्टर की दुकान है।

और एक के हाथ मे पेन भी है।

जिन पर दो आदमी चल रहें है।

अउर पहाड़ कुछ पेड़ पौधे भी है।

और एक गमला भी धरा हुआ है।

अउर एक बाइक भी खड़ी हुई है।

यहां पर एक बस खड़ी हुई है।

और इसमें बहुत सारे लोहे की कुर्सियां धरी हुई हैं।

आउटसाइड में एक खिड़की भी है और नीचे टाइल लगी हुई है।

और यहां पर बहुत आदमी भी हैं।

और इसमें ए_सी भी लगी हुई है।

और इनके पीछे कुछ पर्दे भी लगे हुए हैं।

और एक काउंटर भी है और नीचे टाइल लगी हुई है।